यहां पर काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं जो कि इधर-उधर टहल रहे हैं यहां पे काफी सारी बाइक भी खड़ीं हुईं हैं यहां पे एक साइड में एक टीन भी डला हुआ है।

कार खड़ी हुईं हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। यहां पे काफी सारे जीने बने हुए है। यहाँ पे काफी सारी गैलरी भी बनी हुईं हैं जोकि बहुत ही प्यारी लग रहीं हैं।